यहाँ पे सिल्वर कलर के बर्तन रखे हुए एक के ऊपर एक बर्तन रखे हुए है कुछ यहाँ पे सिल्वर कलर के ग्लास है यहाँ पे ग्लास रखे हुए है।

यह एक ग्राउंड है | यहाँ पे बहुत सारी घास उग रही है और आजु-बाजु बहुत सारे पेड़-पौधे लगे हुए हैं और एक अंकल ग्राउंड में घूम रहे हैं।

स्कूल यहाँ पे एक टीचर खड़ी हुई है और कुछ बच्चे वर्क कर रहे हैं टीचर उनका वर्क देख रही हैं।

ये एक यहाँ एक कंप्यूटर रखा हुआ है और एक अंकल सेल्फी ले रहे है एक अंकल खड़े हुए है।